एक बाहर एक चेयर रखी है।

रूरल टेक्नोलॉजी और छोटा--

ये एक किला है बहुत प्राचीन किला है इसमें कुछ सीढ़ियां दिख रही है ऊपर--

दूसरे पोस्टर पे एस के ऑनलाइन प्लान --

बहुत सारा स्टेशनेरी का सामान रखा हुआ--

गया है एक पूजा स्थल दिखाई दे रहा है जहाँ औरते --

और एक वेब साइट भी लिखी हुई है डब्लू-डब्लू डॉट राजधानी बस डॉट कॉम --

छाँव है और कही धुप भी दिखाई दे रही है बगीचा पूरा खाली है।

और एक लड़का खड़ा हुआ है काले रंग का कुर्ता प और पजा--